उसका पीछे में बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है नदी --

और लेफ्ट साइड में वॉल दिखाई दे रहा है।

इसमें एक रस्ता दिखाई दे रहा है।

और एक बड़ा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

और हिरन का आस पास में बहुत सारा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

इसमें वाइट कलर का एक छोटा ट्रक दिखाई दे रहा है।

मिस्टर रोस्टर लिखे है और उसका सामने में भी साइन बोर्ड लुक है।

और ऊपर में सीढ़ी दिखाई दे रहा है खिड़की का अंदर से।

इसमें बहोत सारा गिट्टी दिखाई दे रहा है पत्थर--

इसमें एक सीट दिखाई दे रहा है।

जो कि सिल्वर और रेड कलर में है।

इसमें ग्रेप्स दिखाई दे रहे हैं पक गया वाला ब्लैक कलर में।

और लेफ्ट साइड में न्यूज़पेपर में एक बच्चा का फोटो दिखाई दे रहा है।

इसमें एक लेडिस टेलर दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है हम्मा लेडीज टेलर बोल के।

और बहुत सारा बंबू और पेड़ दिखाई दे रहा है सामने में।

और ऊपर में कार्टून बॉक्स दिखाई दे रहा है बहुत सारा रेड कलर में और वाइट कलर में।

और लेफ्ट साइड में फैन दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर में भी है और रेड कलर में भी है ऑरेंज कलर में भी है।

और नीचे में फ्लावर पॉट भी दिखाई दे रहा है।

और उसमें आगे में पाइप दिखाई दे रहा है।

और लेफ्ट और राइट में वॉल दिखाई दे रहा है वॉल में खिड़की दिखाई दे रहा है।

राइट साइड में ब्लैक कलर हैं और लेफ्ट साइड में सिल्वर कलर दिखाई दे रहा है।

और उसका सामने में एक बाल्टीन भी दिखाई दे रहा हैं प्लास्टिक का।

इसमें एक साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसका बाहर में लिखा है एम_एस_टी साइबरकैफ बोल के--

उसका नीचे में छोटा छोटा कलर पेपर दिखाई दे रहा है।

और उसका नीचे में दरवाजा दिखाई दे रहा है शीशा वाला--

इसमें ज्वेलरी का शॉप दिखाई दे रहा है।

और कपड़ा भी दिखाई दे रहा है उसका सामने में।